कुछ बास्केट्स नजर आ रही है।

और पत्थर नजर आ रहे हैं।

यहां पर दो बैल नजर आ रहे हैं जो की पानी के बीच में नजर आ रहे हैं।

नीला आसमान नजर आ रहा है।

बालों में बहोत अच्छा डिजाइन बनाया हुआ नजर --

यह किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं।

और कुछ बिल्डिंगस नजर आ रही हैं पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

यह किसी फोन की दुकान नजर आ रही है।

पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है और पत्थर तथा चट्टानें नजर आ रही है।

नीचे फ्लोर पर कीचड़ नजर आ रही है।

और बहोत से वूफर नजर आ रहे हैं।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

बॉटल और जग गिलास दिखाई दे रहे है।

और लाइट्स नजर आ रही--

यह कोई रेस्टोरेंट नजर आ रहा है।

गेट बनाया हुआ नजर आ रहा है।

दूर दूर तक पेड़ पौधे और--

बहोत से लोग गाड़ी एवं बाइक्स पर जाते हुए नजर आ रहे हैं।

यह कोई स्विमिंग पूल और पार्क नजर आ रहा है जहां पर--

यहां पर एक बहोत सुंदर सा--

पूरी तरह से बैनर से लदी हुई है।

चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और ब्लैक एंड व्हाइट आसमान दिखाई दे रहा है।